ये एक इसके तीन पहिये होते हैं।

ये कुछ बातक है हंस है मलतब।

और ये लड़ियां भी इने कह कहा जाता है।

और यह जो पानी है पहले इसपे प्रेसर बनया जाता है।

और ये बहुत ही अच्छे बात है हमें भी पौधे लगने चइये।

जैसे की हम सब जानते है कि जो पोपले प्लेस होते हैं जैसा कि अन आई एम है --

पर हमें पेट्रोल पंप दर्शये गए है।

जो की डांस सीख रही है।